मुझे एक थमशप की बॉटल और एक बिसलरी की बॉटल दिख रही है। दो गिलास भी मुझे दिख रहे हैं।

मुझे एक ब्लैक कलर की लैपटॉप दिख रही है तथा दो-तीन चेयर्स भी काले रंग में दिख रहे हैं।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यह दिन का समय है मुझे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा पेड़ के नीचे कई सारे गमले रखे हुए हैं।

ए_टी_एम का गेट कांच का है मुझे कुछ सीढ़ी भी दिखाई दे रही है मुझे शटर दिखाई दे रहा है और ए_टी_एम के अंदर कई सारे लोग खड़े दिख रहे हैं।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मुझे बहुत सारे बोरे दिखाई दे रहे हैं जो कि चावल या आटे के बोरे प्रतीत हो रहे हैं।

मुझे तीन लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं और दीवार पर टंगा हुआ लाल कलर का फायर एक्सटिंगगुइशेर भी दिख रहा है।